एक भैया गेट खुला हुआ है एक जो दिखने में बहुत खूबसूरत है वहां पे दो लड़के जा रहे है उधर एक--

काफी अभी यहाँ से देखने में बहुत हैंडसम है दो मंजिला के मकान है उम यहाँ के पेड़ पौधे भी हरे है जो अ हैंडसम है।

उम यहाँ पे रोड भी है जो उम देखने में बहुत ही हैंडसम है।

अरे ये क्या यहां पे देखिए दो मंजिला का मकान कितना बड़ा है और देखने मे बहुत अच्छा लगता है यहां पे।